यह एक किताब की दुकान है किताब बहुँत काम की चीज होती है यहा पे यु.पि.एस.सि नोटस के लिए भी अवेलेबल किताब है और इग्नू के लिएकिताबे अवेलेबल है।

आयने की तरफ और सेल्फी की तरफ देख रहे है जो की ब्लू लाईन के अंदर ही खड़े है सब ने अलग अलग रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए है यह तस्वीर एक जिम की--

यह विक्रेता पेन बेचने में बहुत ही ज्यादा मगन है सामने बहुत सारे पेन नजर आ रही है।

यह एक आदमी की तस्वीर है जो की बहार की और देख रहा है सामने का नजारा खाफी सुदर है क्यों की यह एक नदी की तस्वीर है नदी के ऊपर एक प्यारा सा पुल बना हुआ है।

जो की बहुत अच्छा लग रहा है सूरज की रौशनी इसमें चार चाँद लगा रही है।

इस इस दुकान मे बहुत सारी किताबे नजर आ रही है बलून भी है फेन भी है बहुत कुछ है इस दुकान में देखने के लिए--

यह एक किताब की दुकान है इस में बहुत सारी किताबे पढने के लिए है अवेलेबल है किताब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है।

इसमें खाफी सुन्दर प्रतीत होती है।

ये दुकान में बहुत सारे किताबे बेचने की लिए लग रही है जो की बहुत ही फायदेमंद है किताब पढना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है।

यहाँ पे किताब की दुकान में किताब देखि जा रही है यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर का नाम और उनका नाम भी लिखा हुआ है जो की संजय चंदू मुंशी लिखा हुआ है।

यह एक स्टेट बैंक का ऐ.टी.एम है जो की लोग क़तार लगा के नंबर आने का इंतजार कर रहे है।